दो डबल बेड लगे हुए देख सकते है।

यहां का पानी बहोत स्वच्छ लग रहा--

इस क्लिनिक का नाम है आरोग्य क्लिनिक और यहां पर डॉक्टर पंकज शर्मा बैठते हैं।

यहां पर एक व्यक्ति अपने हाथ में नेसकॅफे कॉफी का मग लेकर फोटो खींच रहा है।

लाल कमीज पहना बंदा एक अपने यंत्र के जरिए जमीन की--

और यहां पर जो सामने हमें दो पुतले दिख रहे हैं उन्हें भी लेडिस कपड़े पहनाए गए है।

इस तस्वीर में हमें एक मैदान का दृश्य दिखाया गया हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं।

जहां पर हम देख सकते हैं की टेबल यहां पर लाल रंग के है।

इस तस्वीर में हमें नदी के किनारे का एक दृश्य दिखाया गया है।

यहां पर हम दो व्यक्ती को देख सकते है जो की एक लेडीज और एक जेंट्स है वो अपना कार्य कर रहे हैं।

यहां पर हम देख सकते है।

और यहां पर एक और बोर्ड लगा है।

एच_पी पेट्रोलियम्स का है। यहां पर हम देख सकते हैं कि सड़क पर दो गाड़ियां खड़ी हैं।